इस इमेज में एक मोबाइल शॉप दिखाई गई है जिसके अंदर ढेर सारे वैरायटी के मोबाइलस फोन और बैक कवर दिखाई दे रहे हैं।